हमें कुछ व्यक्ति और महिलाये बच्ची खेल रही है और मैदान के चारो तरफ बच्चे ही बच्चे दिखाई दे रहे --

और कुछ व्यक्ति या मैदान में बैठकर मैच देख रहे हैं और चारों तरफ मकान बनी --